ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक कमरा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में घर के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

इस समय में दिन का समय हो रहा है।

पीछे की तरफ एक बिल्डिंग दिख रहा है ।

ऊपर के तरफ बहुत सारे लाइट्स दिख रहे हैं साइड में परदे लगे हुए हैं।

साइड में कुछ पेड़ पौधे दिख रहा है।

साइड में एक सफेद रंग का ट्रक दिख रहा है।

सामने की तरफ एक काला रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

दूर में पहाड़ नजर आ रहा है।

दुकान के नीचे बहोत सारी इंसान दिख रहा है।

दीवार में एक टी_वी लगा हुआ है।

बाहर की तरफ कुछ पेड़ दिख रहा है।

पीछे में कुछ बिल्डिंग भी दिख रहे है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक दुकान नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक जगह नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारा दुकान दिख रहा है।

कमरे के अंदर बहुत सारे इंसान दिख रहा है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक कक्षा नजर आ रहा है।

पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ टेबल दिख रहे हैं।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक पार्क नजर आ रहा है।

साइड में एक बैंक दिख रहा है।

ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ओयो लिखा हुआ है।

घर का रंग सफेद दिख रहा है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक रस्ता नजर आ रहा है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।